साइड में एक ग्रीन कलर का डस्टबिन रखा हुआ है।

दूर एक पहाड़ नज़र आ रहा है।

यह इमेज एक नदी तालाब की दिखाई दे रही है।

वाइट कलर का इंटररियर है और खिड़की है।

यह इमेज में एक स्कल्पचर दिखाई दे रहा है एक मोनुमेंट्स एक मंदिर दिखाई दे रहा है आस-पास घास लगी हुई है।

यह इमेज एक मंदिर की दिखाई दे रही है।

एक अम्ब्रेला दिखाई दे रहा है। कुछ बाइक्स नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग घूमते हुए नज़र आ रहे --

ब्राउन कलर के पिलर नज़र आ रहे हैं और एक व्हाइट लाइट ।

प्लस यहाँ पर ऑरेंज येलो कलर के कर्टन्स लगे हुए हैं।

साइड में एक चैनल गेट दिखाई दे रहा है। एक ऑटो रिक्शा दिखाई दे रही है। एक --

एक ब्लू कलर की चेयर है।

इसका नाम सुखिदो पैलेस है इसपे पिंक कलर का --